अभी पूरी तरीका से बनके तैयार नहीं हुआ है इसमें काम चल रहा है।

टेंपो स्टैंड का फोटो दिखाया गया है |

इस हॉस्पिटल में बहुत ही अच्छा तरीका से इलाज --

क्राफ्ट बना रहै है जो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है।

का दूध एकदम ही ताजा होता है पैकेट वाला पाउच वाला हर तरह का दूध मिलता है।

इलेक्ट्रिक इंजन का होता है बैटरी से चलता है।